पर एक बहुत ही बड़ी एक नदी जाती हुई नज़र आ रही है। नदी में हमें बहुत सारा पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का कलर हमें ब्लैक नज़र आ रहा है और हमें यहां पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक बहुत ही बढ़िया एक स्कूल दिखाई दे रही है। स्कूल के बिल्डिंग का कलर हमें दिवार का कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है और वहाँ उसका कलर हमें कत्ताय ग्रे दिखाई दे रहा है।